देख सकते हैं ये बच्चे कलम लेने के लिए आए हुए हैं और ये बच्चे कलम ले रहें हैं देख सकते हैं ये कलम ले रहें हैं बच्चे --